साइडो से जाल लगा हुआ है साइड में लिखा हुआ है एक बोर्ड पर सावधान--

कुछ गिरा हुआ है पार्टी वगैरह का जो उड़ते हैं वो।